गाड़ी एक ब्लैक है और एक वाइट है बीच में से सड़क निकल रही है और एक रे बुक लिखा --

और एक नीले कल पीले कलर की टंकी दिखाई दे रही है और आसमान साफ दिखाई दे रहा है।

यह एक कपड़े की दुकान है जिसके अंदर बहोत सारे कपड़े टंगे हुए और रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बीच में एक गैलरी हैं जोकि खाली है और पंखे चल रहे हैं और आस पास में कुछ तस्वीर भी लगी हुई हैं।

यह सी_पी_सी मशीन है और आसपास में कुछ तरह से बनी हुई है जो कि लकड़ी की है यह एक मेज के ऊपर पड़ा है।

और बाहर वेलकम यू लिखा हुआ है और यह एक बहुत बड़ी दुकान है जिसके अंदर बहुत सारे --

बहोत सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ लाइटें भी लगी हुई है और आस पास में पंखे लगे हुए हैं।

यह एक शॉप है जिसके अंदर बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं और यह अलमारीयों में जचाए हुए हैं और आसपास में बहुत सारे --

धनुष निकाले हुआ है इसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक बहुत पक्का है और इसके पांव बाहर हैं।

यहां एक घर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक ब्लैक रंग की टंकी दिखाई दे रही है और एक वैन खड़ी है और आसपास में बहुत सारे --

वो गार्डन है जिसके अंदर कुछ लोग ग्रीन कलर की दरी बिछाए बैठे हैं और आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो की हरे भरे हैं।

यह एक घर है जिसके ऊपर पीला पेंट किया हुआ है और आसपास में कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं जो की हरे भरे और उनकी पत्तियां भी दिखाई दे रही है।

और आसपास में बहोत सारे पंखे और फूल लगे हुए हैं जो की गुलाबी और नीले और हरे भी हैं।

और इस गुफा के अंदर बहुत सारा अंधेरा है और इस आदमी के जूते और एक टी-शर्ट और एक ब्लैक पैंट दिखाई दे रही है टी-शर्ट ग्रीन है और इसके हाथ काले दिखाई --

और खिड़कियों पर कुछ पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और बीच में एक फोटोग्राफर की मशीन पड़ी हुई दिखाई दे रही है और बीच में से गिल्टी खाली है।

और लाइट जो की फर्श पर चमक रही है और इसके अंदर बहोत सी--

यहां बहुत सारे टैक्सी खड़े हुए हैं ऑटो खड़े हुए हैं और कुछ बाइक्स भी जा रही है और गली के बीच में कुछ --

एक लाल चटाई बिछी हुई है जिसके ऊपर यह मशीनें पड़ी हुई है और अन्य अन्य प्रकार की मशीनें हैं इसके अंदर लाइट जल रही है।